कुछ बाइक खड़ी हुई है। एक सिक्युरिटी वाला बाइकों की चेकिंग कर रहा है। रखवाली कर रहा है। कुछ लेडीजे अंदर बेग चेक कर रही हैं।

मछली बाजार। यहाँ पर ऑक्टोपस भी है मछली भी है केकड़े भी है।

योगा करने से हमारे शरीर अ स्वस्थ रहता है औ हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है।

ये फूल कितने सुंदर द लग रहे है। एक फूलवाला एक फूल को बेच रहा है। कुछ उसने गुलदस्ता बना --

कुछ खाली हाथ चले जाएंगे पर फूल बेचने वाला बोहोत सुंदर तरीके से फूलों को रखे हुए है।

लेबर लोग किसी घिरनी गाड़ी से एक बड़े विशालकाय पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति आपने मोबाइल से कुछ जरूरी काम कर रहा है।

ये मछली बाजार लग रहा है। यहाँ पर मृत मछलियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ ताजी हैं बासी हैं। मछली बाजार में कुछ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। कुछ बरफ के ऊपर हैं।

यह मंच किसी स्कूल का है। जिसमे बच्चों ने प्रोग्राम मे भाग लिया है और ये अपना फोटो --

कुछ देख रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे पत्थर नजदीक में पड़े हुए हैं।

ये एक चर्चगाह है जो पीछे पादरी खड़ा हुआ है। आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं। जिन्होंने आपने हाथ में बाइबिल ले रखी है।